जैसे की आप इस तस्वीर में देख सकते हैं यहाँ पे अ किसी पैलेस या फिर किसी म्यूज़ियम या किसी भी अंदर की तरफ --

टेबल शीशे वगैरह है ऊपर में सब काफी सारे हेयर प्रोडक्ट्स हैं जो की लेडीज़ ही काफी ज्यादा यूज करती हैं।

जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते है कि यहां पे दो दुकानें दिखाई दे रही है।

यह एक रोड साइड की तस्वीर है।

यहाँ पे काफी सारे वाहन चल रहे हैं यहां एक साइड में रोड के उस तरफ पुलिस की बैरिकेटिंग भी लगी हुई है।